दो साइड है एक साइड टेबल बाहर के रखे हुए हैं बाहर अच्छे से सजाए गए हैं लाइटे लगी है और एक साइड --

चार चेयर ग्रीन कलर की है राउंड वाली।

एक टेलीफोन का दिख रहा है रेड कलर में एक बुलेट को दीवाल पे लटकाया गया है।

ब्लू कलर की डस्टबिन रखी है कोकाकोला का फ्रिज है बड़ा सा।

इस इमेज में एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा और उसी के --

जस्ट ऑपोजिट में हीरो होंडा स्प्लेंडर खड़ी है।

अ उसीस के सामने दो अंकल बैठे है व वायर के खंभे है बड़े से झाड़ है।

फोर व्हीलर कई सारे खड़े हैं टू व्हीलर भी कई साड़ी खड़ी है एक ट्रक खड़ी है।

घर को बनाया हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है जो कि अभी नीचे का काम--

कुछ मजदूर खड़े है एक अंकल ने सिर्फ बंडी और ब्लैक --

पैंट पहने खड़े हैं और बाकी मजदूर भी खड़े हैं।

टेबल पे दो कंप्यूटर है एक कंप्यूटर चल रहा है और एक माउस एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक बड़ी सी मूरत खड़ी है जो कि --

ऑरेंज कलर की साड़ी और एक ग्रीन कलर की साड़ी पहने उनके बगल में एक अंकल खड़े हैं।

एक दूसरे आदमी जो बैठा है उसको कटिंग कर रहे हैं उसके बाल काट रहे हैं।

बोर्ड पेपर पे पतंजलि टेस्टी नमकीन डब्बा लिखा गया है बलून से सजा है।

बलून नीला और लाल कलर का हैं तीन आंटी या हैं साड़ी पहने खड़ी हैं कुछ बच्चे हैं।

और पैनासोनिक कोका कोला का एक डब्बा है हेयर ड्रायर दिखाई दे रहे हैं।

सोफे रेड कलर के चेयर रेड कलर के हैं।

यह इमेज में और भी टू व्हीलर यानी एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी है।

उनके आसपास में कैंडल जल रही है और दो फ्लावर बुके --

चेयर पे रेड कलर के एक गार्ड अंकल बैठे हैं जिन्होंने लाठी पकड़ी--

सब टंगे हुए है कुछ चेयर भी रखे गए हैं।

सीढ़ियों पे बैठे हैं और कुछ नीचे और कुछ खड़े हैं।

यह इमेज किसी स्कूल के फंक्शन का है जैसे की एनुअल डे का--

बीच में एक लड़की जो माताजी बनाकर इंडियन फ्लैग को हाथ मे ली है।

ये इमेज एक शॉप का जो कि इलेक्ट्रॉनिक सा शॉप है नया नया ओपनिंग है।

फोन के कवर टंगे गये है। व्हाइट कलर की चेयर --

कैरेट में सब्जियां रखी गोनी पे सब्जियां रखे हैं।

यह इमेज गार्डन का जहां पर लोखंड का पिरामिड जैसा कुछ बना है।

दो बच्चे उस पिरामिड पे खड़े हैं एक बच्चे ने ब्लू कलर का शर्ट और चड्ढा पहना है।

एक औरत डांस के पोजीशन में बैठी है।

यह इमेज किसी फर्नीचर की दुकान का है जहां पे --

और पीछे भी व्हाइट कलर का फर्नीचर रखा गया है।

नीचे की साइड में एक सर्कल में कुछ रखा है जो की--

बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी मोजे शूज़ --

ब्लू कलर का पतरा लगा और बीच में रोड जहां पे बहोत सारे अ पब्लिक --

लाइन लाइन से एक टेबल पे रखे गए हैं टेबल व्हाइट कलर की है।

अ मिट्टी की जमीन है उसपे अभी अ--

वो जैसे तीन बंदे हैं जो जन--

एक अंकल अंदर ग्रे कलर का।

शर्ट पहने हँस रहे हैं और एक बाहर ब्लू कलर का टी शर्ट पहना और ट्रैक पैंट ब्लैक कलर का पहना है।

ये ये साइड दो अंकल बैठे बीच में गणपति बप्पा की एक मूर्ति रखी गई है।

एक बोर्ड लगा है जहां पे लिखा है निदा इत्र सेंटर ।

सारे बॉयज ने वाइट कलर का ऊपर नीचे का पहना है अ बट अंपायर ने --

टेंट बनाकर बहुत सारी भगवान जी की मूर्तियां रखी गई है।

यह इमेज एक रेस्टोरेंट का जहां पे दीवाल आधी व्हाइट कलर की और नीचे के साइड येलो कलर की है।

ब्लू कलर की चेयर है ब्राउन कलर के टेबल है ऊपर--

और इसका कलर एकदम भूरा कलर है ग्रे मे--